और यहा बहुत सारी भीड़ भी खट्टी हुई है और यहा कुछ लोग पैदल चल रहे है।

कुछ लोग बनियान पर है और कुछ लेडिज है जो सभी जल मे खड़ी हुई है और कुछ सीढ़ियो पर ऊपर खड़ी हुई दिखाई दे--

यह लड़की मोबाइल के बॅक कैमरे से काँच मे फोटो ले रही है इसके पीछे कुछ दीवार पर फोटोस भी लगी हुई --

नीचे खड़े हुए है और कुछ छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर है।

वह एक व बच्ची छोटी है और दो बच्ची एक साइज की है और यहाँ यह बच्चीया डांस कर रही है।

यहाँ हमे एक कुछ लड़के खड़े दिख रहे है और यहाँ एक बैनर लगा है जिसमे आइ नीड़ कॉफी लिखा हुआ है।

यह शॉप एक कॉफी का है जहा पर लिखा हुआ है टाइगर वे कॉफी और यहाँ अंदर कुछ व्यक्ति खड़े हुए है।